दुकान के ऊपर में एक घर है।

उसमें एक पिलर भी लगाया गया है जिस पर एक घड़ी भी लगाया गया है।

होटल के अंदर में कुछ नहीं है बस एक ड्रम और एक स्टील का अलमीरा रखा हुआ है।

इसमें बांस का पिलर लगाया गया है।

यह एक दुकान के अंदर का दृश्य है।

ट्रक के ऊपर में ब्लू और वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा नदी का दृश्य है।

यह एक हॉल के अंदर का दृश्य है।

यह एक रोड पर का दृश्य है रोड के किनारे में दुकान है।

यह एक स्विमिंग पूल के अंदर का दृश्य है।